आगे मुझे बहुत सारे केले नजर आ रहे हैं।

और रेल के पटरी के अगल-बगल मुझे बहुत सारे अलग-अलग तरह के--

और मुझे एक औरत खड़ी नजर आ रही है।

मुझे एक आदमी बैठा हुआ नजर आ रहा है एंट्रेंस पर|--

प्यारी लाइट से सजा हुआ है मुझे कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं।

और मुझे बहुत सारी पेड़ नजर आ रही है।

इसने काले रंग का जैकेट पहना हुआ है और वाइट कलर का पँट पहना हुआ है।

इसके अंदर बहुत सारे पौधे रखे हुए है।

और मुझे समुंदर का ब्लू पानी नजर आ रहा है।

और मुझे पीछे बड़े-बड़े पहाड़ जैसे कुछ दिख रहा है।

इस दूसरे साइड पर बहुत सारे लोग खड़े हैं।

और उस बिल्डिंग पर हल्के येलो और हल्के ऑरेंज रंग से किया हुआ है।

मुझे कुछ घास नजर आ रही है जो रोड के दूसरे तरफ है।

मुझे बहुत सारे रेलवे लाइन नजर आ रहे हैं।

और मुझे कुछ बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं मुझे बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं जो बिल्डिंग के पीछे है।

इस प्लेइंग ग्राउंड में--